हॉस्पिटल के ऊपर एक बोर्ड लगा है जिसपर लिखा है संजीवनी केयर हॉस्पिटल जिसके निचे एक आदमी और एक औरत खड़ी हुई है और यहाँ पर बहुत सारी --

नीचे नीले रेड और सफ़ेद कलर से पेंट किया गया है उसके ऊपर और भी झूले हैं जो की पीले कलर से पोते गए हैं।